एक आगे में टेबल है टेबल पे सामान रखा हुआ है एक कपड़ा रखा हुआ है।

यहां पर एक शोरूम का दृश्य दिख रहा है जिसमें बहुत सारे स्कूटी लगाए हुए हैं।

यहां पे दो पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है उसके ऊपर एक छज्जा टाइप का है वो भी ग्रीन कलर का अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे और नीचे एक और खंबा टाइप का है।

उसके ऊपर भी एक ब्लू कलर का लाइट जल रहा है।

इसमें इस रूम में बहुत सारे लाइटें जल रही है पीछे खिड़की है उससे लाइट आ रहा है अंदर में औ--

फैन चल रहा है स्विच है स्विच के अंदर चार्जर लगाया हुआ है ब्लैक कलर का।

यहां पर पत्थल का दृश्य दिख रहा है जिसके बीचों बीच एक आदमी खड़ा है।

और एक बिंदी टा टागा हुआ है बहुत सारे लाइटे जल रहे हैं इस रूम में --

यहां पर एक रास्ता दिख रहा है रास्ता के बीच में कचरा फेंका हुआ है और उसके नीचे पर छोटा छोटा घास लगाया हुआ है।

एक पेड़ पौधा है बड़ा सा वो भी लरण गया है घर के ऊपर तक उसके बगल में एक शटर लगाया हुआ है।

और गेट है लगाया हुआ एक सोने वाला जिम करने का है।

पर्स रखा हुआ है वो भी दांत रखा हुआ मसूड़ा रखा हुआ है।

बगल में बेसिंग है बेसिंग पर हैंडवाश रखा हुआ है।

और के रंग बिरंगे का कलर से पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक मॉल का दृश्य दीख रहा है जिसके सामने एक पोस्टर लगाया हुआ है।

और रेक पर बहोत सारे डब्बा रखा हुआ है डब्बा के अंदर बहोत सारे जुता है रंग बिरंगा जुता है व्हाइट है येलो है ग्रीन है ब्लू है रेड है।

वो रास्ता है सामने सामने रास्ता पे बहुत सारी महिला लोग चल रही हैं

और सामने में एक पेड़ लगाया हुआ है तार के ऊपर पेड़ है।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटा बड़ा पेड़ पौधा सूखा पेड़ पौधा है।

और मोबाईल का दुकान है उसमे सब कोई काम कर रहा है बहोत सारे लोग है एक आदमीन बड़ा बाहर खड़ा है वो व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और ब्लू कलर का जींस--

एक रेड कलर का पोस्टर सामने दिख रहा है उसके नीचे खंबा ब्लैक कलर का है अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ऊपर लाइट है वाइट कलर का।

और उसके बाद एक रेलिंग दिया हुआ है छोटा सा रेलिंग है।